सामने दुकानें नजर आ रहीं हैं दुकानों के शटर खुले हुए हैं एक दुकान में अंदर कुछ बोतलें नजर आ रही हैं दुकान के बहार छत पर एक पंखा लगा हुआ है।

सामने एक बिल्डिंग है बिल्डिंग के ऊपर ब्लू कलर का बैनर लगा हुआ है बैनर पर राज्य कर भवन ऋषिकेश लिखा हुआ है सामने एक पोल नजर आ रहा है।

सामने एक दीवार बनी हुई है दीवार पर ब्राउन कलर का पेंट हो रहा है एक तस्वीर बनी हुई है भोले बाबा और केदार मंदिर सामने दिखाई दे रहा है।

एक दुकान है दुकान के अंदर एक काउंटर बिछा हुआ है काउंटर पर कुछ फूलों की माला राखी हुए हैं बोहोत सारे गमले साइड में टंगे हुए हैं।

कुछ रसियाँ बंदी हुई साइड में कुछ हरी-हरी घास भी नज़र आ रही है घासों के साइड में कुछ सूखी घास भी नज़र आ रही हैं।

सामने एक बोर्ड लगा हुआ है बोर्ड पर ग्रीन कलर में आयुक्त कर उत्तराखंड लिखा हुआ है सामने स्कूटर नजर आ रहा है स्कूटर पर एक आदमी हेलमेट पहने बैठा हुआ है।